ऊपर एक झुमर लगा है साथ ही सामने कुछ फोटो फ्रेम्स नजर आ रहे हैं।

बादल साफ दिखाई दे रहा है।

एक खंबा भी बना नजर आ रहा है।

यह एक खिलौने की दुकान है।

एक बिल्डिंग देखे रहे हैं जिसका रंग सफेद है।

पीछे स्टील कि रेलिंग भी लगी हुई है और एक पौधा भी दिखाई दे रहा--

सामने तेल के डिब्बे भी रखे गए दिखाई दे रहे--

जिस पर दो लोग खड़े भी नजर आ रहे है।

जिस पर लाल रंग के और हरे रंग के सोफे --

अंदर कांच का गेट दिखाई दे रहा है।

साथ ही नीचे हरे रंग की चटाई दिख रही है।

मकान को देख रहे हैं मकान का रंग कुछ क्रीमी तो कुछ गेरूआ सा है।

यहां पर हम सामने मंदिर के प्रवेश द्वार को देख रहे हैं।

ऊपर झंडे लगे हुए नजर आ रहे हैं। अधिक कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।